स्टेज बना हुआ है उस पर बहुत सारीया--

एक मकान बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

स्पोर्ट्स की शॉप दिखाई दे रहे है जहां पर बच्चों के स्पोर्ट्स का समान मिलता है।

लकड़ी का दरवाजा लगाया हुआ है।

और यहां बहुत सारे गमले में फूल-पौधे लगाए हुए हैं।

सजाया हुआ है और फायर एग्जिट भी--

जहां पर बहुत सारा जिम का सामान रखा हुआ है और सामने की दीवार पर--

दो मेज दिखाई दे रही हैं उनके आस पास बहुत सारे--